और उस ग्राउंड में एक लंबा सा रॉड टाइप का कुछ गिरा हुआ है।

वॉल पे बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर लगा हुआ है।

रूम दिख रहा है बड़ा सा रूम होटल रूम दिख रहा है सामने में गेट है अंदर में एक पेट टाइप का कुछ दिख रहा है और ---

ये खाली मैदान टाइप का है पार्क टाइप का है पार्क टाइप बच्चों का पार्क --

ये केंदे के फूल जैसे तो लग रहे हैं।

रेडिश टाइप का कलर का कुछ बिल्डिंग्स है पीछे --

शायद कुछ दबाई होगा जो कि इस पेड़ों को दिया जा रहा है।

पीछे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और एक वाल से उसको कवर किया गया है।

और सामने में एक बकेट टाइप का कुछ दिख रहा है।

ये एक पोस्टऑफिस है बड़ा सा पोस्टऑफिस है।

बेंच टाइप का कुछ बना हुआ है बड़ा-बड़ा विंडो भी है और कुछ बच्चे बेंच में बैठे हुए सामने एक ग्रीन बोर्ड है।

जिस पे कुछ स्कूल का नाम लिखा हुआ है और आसपास में कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं आते-जाते हुए ये एक पीछे लगता है एक स्कूल है।

नीचे में लाइटिंग से डेकोरेशन किया हुआ है उसकी सीढ़ियों पर और उसके फर्स्ट फ्लोर पे ----

ये एक स्टोर टाइप का है बड़ा सा स्टोर टाइप का--

ये एक बिल्डिंग वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रही है सामने में सामने में सामने का जो एरिया है बहुत ही खुला सा है।

और ये गेट अंदर की ओर जाते हुए दिख रहा है।

कैप लगाए हुए हैं रेड कलर का क्रिसमस कैप जो होता है वो लगाए हुए हैं सबने वाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ है।